यह एक मोबाइल रिपेयरिंग है यहां पर नए एवं पुराने मोबाइल खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करने का बोर्ड भी लगा है।

अंदर एक कार भी खड़ी है कार की लाइट जल रही है।

यह एक कार रिपेयरिंग गैरेज है।

यह एक रोड है रोड पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं पैदल और कुछ व्यक्ति साइकिल से जा रहे हैं।

बगल में दूसरा ठेला खड़ा है।

यहां पर कुछ बॉक्स रखे हैं बक्सों के ऊपर एक बारकोड रखा है।

यहां पर लिप्टिस का पेड़ भी खड़ा है।

गाड़ी के पीछे मकान भी हैं मकान के साइड में पेड़ भी खड़े हैं।

बीच में एक टेबिल है टेबिल पर एक थाल रखा है जिसके अंदर फूल हैं।